उसी के ऊपर एक ब्लैक कलर की कार भी दिख रही है जो कि टंगी हुई है।

इस तस्वीर में एक बड़ी-सी मैदान दिखाई दे रही है औ --

और जिसके पीछे एक बड़ा-सा नदी भी दिखाई दे रही है।

दुकान के आगे ब्राउन कलर का एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

जिसके सामने बहुत बड़े-बड़े मशीन भी दिखाई दे रहे।

ऊपर सीलिंग में लाइट में बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

जिसमे वाइट कलर की है। पर्पल कलर की है और येल्लो कलर की है।

जोकि थोड़ी छोटी-छोटी और कुछ बड़ी-बड़ी दिखाई दे रही है।

और पत्थर के सीढ़ी के बगल में एक हरा कलर का पेड़ भी दिखाई दे रहा --

इस तस्वीर में एक दुकान की तस्वीर नजर आ रही है।

जो की ईट की बनी गयी है।